साथ में यहां बहोत सारे लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं चारों ओर कैमरे लगे--

यहां पास बहोत सारे बड़े-बड़े चाय की दुकानें हैं और साथ में यहां पास बहोत सारे लोग खड़े हैं।

बाहर ट्रक दिखाई दे रहे है साथ में यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं।

जहां पास बहोत सारे तालाब में पं--

साथ में यहां पास बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहां पर बहोत से लोग खड़े हुए हैं जो पक्षी की फोटो खींच रहे है।

यहां पर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। साथ में यहां पास एक शादी का पंडाल के बाहर लाइटे लगाई गई है।

इस फोटो पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चारों ओर लोग खड़े हुए हैं यहां पास एक बच्चे का बाल काटे जा रहे हैं।

दुकानों के पास में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है साथ में यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं चारों ओर कैमरे और लाइट लगाई गई हैं।

और यहां पास एक कार्यालय बनाया गया है जहां पास कार्यालय के चारो ओर--

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे हैं साथ में भी यहां लोग खड़े हुए हैं चारों ओर कैमरे और लाइट लगाई गई है।

यहां पास कुछ लोग बैठे हुए हैं साथ में यहां पास एक शादी का--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

यहां पर बहोत सारी खम्मे ग़ड़े हुए हैं।